और साइड में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे देख रहे है हरे भरे पेड़ भी दिख रहे है एक ब्रेकर के लिए यलो कलर की जाली दिखाई दे रही है लोहे की है।

यहाँ पर एक हम बड़ी सी बिल्डिंग में एफ.डी.एफ.सी. बैंक है ओ और एफ.डी.एफ.सी. बैंक हैं।

और पीछे साइड में नीले वाइट नीले और वाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा हैं। हरे काले पेड़ भी दिख रहा हैं ।एक बड़ा सा खम्बा दिखाई दे रहा हैं सीमेंट का जोकि हलके हरे कलर का हैं।

यहाँ पर हमे एक एस_बी_आई लिखा दिखाई दे रहा है इस दीवार की बालकनी की छत पर और कुछ नीले वाइट अक्षरों मे कुछ लिखा हुआ है।